पर ढके हुए हैं और उसके ऊपर कुछ लोग चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं सामने एक बिल्डिंग है जहां पर लोग बहुत सारे इकट्ठे और नीचे भी बहुत भीड़भार हो रही हैं।

और एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन के पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

एक वो लड़का वो अभी धो रहा है। सामने एक और बस रखी हुई है। वहां की सड़क--

इस चित्र में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है यह घर गोल्डन कलर से पता हुआ है घर के बाहर कच्ची सड़क--

कॉलेज में बहुत सारी बिंडो भी नजर आ रही है कॉलेज के बाहर एक बड़ा गार्डन है और यहां--

इस चित्र में मुझे एक नर्सरी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में मुझे बहुत सी गाड़ियां और ऑटो नजर आ रही है सामने एक बिल्डिंग है जो ग्रीन कलर से पुती हुई है।

और एक बाइक भी नजर आ रही है।

इस चित्र में मुझे इंटरनेशनल बुक हाउस नजर आ रहा है जो कि वाइट कलर से पुता हुआ है।

पर एक लड़का उम हाथी उमम हातू की छ हाथी सुन पर एक लड़का बैठा हुआ है और शाम्म नीचे--

इस चित्र में मुझे एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है बड़े से घर के पास एक बड़ा सा गेट लोहे का गेट लगा हुआ है।

य और यहां यह घर वाइट कलर का बना हुआ है।

एक बेड रखा है दो पिलो --

इस चित्र में मुझे सब्जी मंडी दिखाई दे रही है और यहां पर ऑटो रिक्शा।